व्यक्ति मौजूद है बिलिंग के लिए--

चढ़कर हम शेरों वाली माता के दर्शन आराम से कर सकते हैं।

यह एक पार्क है और पार्क के अंदर ही दूर कुछ जने बैठे हुए हैं।